हरी हरी घास भी दिखाई दे रही है पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं |

यहाँ पर हमें एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है।

और यहां पर आस-पास लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

फ्लावर्स में दिखाई दे रही है गुरकन हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है |

भी खड़े हुई हैं दिखाई दे रही है और ऊपर हमें --

और यहाँ पर हमें पेड़ उड़ दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े से |